एहा एक ट्रैक्टर है ।

यह एक घर है ये घर में एक व्यक्ति गोंदा का फूल को माला गूँथ के घर में सजा रहा है और ये गोंदा का फूल दिखने में क्या सुन्दर दिखता है।

और ये कारखाना में कई झने व्यक्ति लोग काम कर रहे है।

कुछ देर बाद इसका शटर खुलेगा।

और इसके साइड में बहुत सा--